ये किसी गांव का दृश्य है जहाँ पर कुछ लड़के लोग दिखाई दे रहे --

जैसा की हम लोग देख सकते हैं ये एक सुपर मार्केट का व्यू है जहाँ पर हम लोग को देखने को मिल जाएगा बहुत सारे हैंड वाश सेवलॉन का।

लगा कर खड़े हुए है बगल में और ये अलग ही शानदार नजारा है राइटिंग अच्छी है।

उम्म हेयर कटर लगता है।

जैसा की हम लोग देख सकते है यहाँ पर एक न्यू टेम्पो है जहाँ की एक सेलर का हम को --

ये एक स्विमिंग पूल आपको नजर आ रहा होगा जिसमें पानी भरा हुआ है।

कुछ बाइक्स लगे हुए हैं और एक शहर का स्ट्रीट लाइट नजर आ रहा होगा और पीछे में एक --

गाड़ी आगे की ओर लगाते हुए देखने को मिल सकता है और कुछ --